और एक आदमी दिखाई दे रहा है इसमें हाथ में डब्बा पकड़ा हुआ है और उसके डब्बे में कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है पत्तियों को डाल रहा है।

तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रही है रोड मुझे ग्रे कलर की दिखाई दे रही है पीछे की तरफ एक टिन का सेट दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर का है।

सामने की तरफ मुझे एक खंबा दिखाई दे रहा है खंभे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए है पीछे की तरफ मुझे बँचक खेत दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कोई भी फसल नहीं दिखाई दे रही है आसमान बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा हे।